इस इमेज में हमें तीन मोटर साइकिल दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे आदमी हमें यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें बहुत सारी मोटर साइकिल दिखाई दे रही है एक कार दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे हमे एक रोड दिखाई छत दिखाई दे रहा है और नीचे है मैदान दिखाई दे रहा है जिस पर घाँस है उस पर हमे बहोत सारी मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे हमे एक इंडियन ऑइल अ-अ-ऑइल की पिक दिखाई दे रही है यहां बीच मे एक चबूतरा सा बना हुआ है जिसमे मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर हम्म यहाँ पर सर्किट से सजावट की गई है। एक केला का पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। चेयर रखी हुई --

एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और सामने हमें बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और हमें एक प्लेट उम जो सफ़ेद कलर की दिख रही है और टेबुल में दो तीन ग्लास भी उलटे रखे हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ हमें बैलून लगे हुए दिख रहें हैं जो रेड और व्हाइट कलर के हैं।